यहां पे छोटी घास है और यहां पे बड़ी बड़ी हरि घास भी है यहां पे देख सकते हैं आसमान में बादल छाए हुए हैं।

यहाँ दिखाई दे रहा है छोटी पानी के झरने और यहाँ पे ।

पिंक कलर की है और यहाँ बहुत गाड़िया है और यहाँ गेट है.

बड़ा सा पहाड़ दिखाई दे रहा है और यहाँ बहुत हरे भरे पेड़ हैं छोटे और यहाँ पे बड़े हरे--

बड़े पेड़ देख सकते है यहाँ पे आसमान सफ़ेद और साफ है।

बहुत सारे कपड़े है शर्ट्स है जीन्स है और यहाँ पे ग्लास का काउंटर है।

छोटे छोटे लाइट्स हैं और यहाँ पे ए_सी है.

और यहाँ पेन की डंडी दिखाई दे रही है और यहाँ पे पेपर है।

यहां बहोत सारे हरे हरे पेड़ हैं बड़े औ यहां पे छोटी घास है और यहां पर छोटे पेड़ पौधे हैं।

और यहाँ बहुत सारे पॉट्स है छोटे हरे--

और यहाँ पे बहुत फूलो से सजाया है।

और यहाँ पे हम देख सकते हैं फूलो से सजाए हुए हैं मंदिर को --

यहाँ घर दिखाई दे रहा है और खिड़की है।

यहाँ एक दुकान है और यहाँ पे बोर्ड लिखे है कुकीज़ अ यूनिट ऑफ कुकीज़ और यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत गाड़ियाँ है।

और यहाँ टिन का शेड है और आसमान भी देख सकते हैं।

और यहाँ पे गाड़ियाँ हैं साइकेल है सड़क है।

और यहाँ पे कुछ लोग सड़क पे जा रहे हैं।

और यहाँ सड़क सूखी है यहाँ छोटे छोटे घास हैं और यहाँ पे.

बड़े पत्थर हैं छोटे पत्थर हैं और यहाँ बहुत सरे लोग पैदल चल रहे हैं और यहाँ आसमान भी दिखाई दे रहा है.

यहाँ पे बोर्ड है और ब्लू चैयर्स हैं।